यह एक इलेट्रिकल ऑटो शोरूम है यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाली ऑटो मिलती है जिससे ना तो किसी की हानि होती है ना ही प्रदूषण होता है यह तो सिर्फ बैटरी से चलता है यह सबके लिए साधारण है।

यह एक झींगा मछली है यह झींगा मछली की डिमांड बहोत रहती है इसीलिए यहाँ पर यह मछली की ज्यादा कीमत में बिक्री होती है यहाँ पर इसे लोग ज्यादा चाव से खाते हैं क्यूंकि यह खाने में स्वादिष्ट होता है।

लोगों के कपड़े मिलते हैं यहां पर ज्यादातर लड़कियों के सलवार सूट पजामे जैसी चीजें यहां पर और यहां सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं।

यह एक जिम है यह जिम में लोग बॉडी बनाने के लिए आते हैं यह जिम में आकर लोग सिक्स पैक मसल्स टाइट और डिप्स बॉडी बनाते हैं यहाँ पर लोग आकर नए-नए फ्रेंड्स भी बना लेते हैं |